मस्जिद दिख रहा है मस्जिद मे एक आदमी दिख रहा है उसने टोपी पहनी हुई है सामने एक गेट दिख रहा है व्हाइट कलर का वहां पे एक फैन दिख रहा है।

कलर का कमल दिख रहा है मस्जिद का आ उसका कलर दिख रहा है वाइट कलर का सफ़ेद कलर का गुम्बद दिख रहा है वहाँ पे एक मोटर साइकिल खड़ी है उसके पास एक आदमी खड़ा है।

इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सा खंबा दिख रहा है वहाँ पे कुछ कुछ बैग लटका हुआ दिख रहे है वहाँ पे एक टेबल दिख रहा है वहाँ पे एक बक्सा भी दिख रहा है उसमें खाने की कुछ चीज़े दिख रही हैं।

वहां पे एक दीवार भी दिख रही है जिस में टाईल्स लगी हुई दिख रही हैवहां पर कोई इंसान नज़र नहीं आ रहे हैं।

वहाँ पे एक और बड़ा सा टेबल दिख रहा है उसपर कुछ बक्सा रखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे कुछ रेके दिख- दिख रहे है उसपे किताबे दिख रही दीवारों पर फ्रेम दिख रहे है और आने जाने के लिए रास्ता दिख रहा है।

एक स्टेज दिख रहा है उसके दोनों साइड मे सीडियाँ दिख रही है वहाँ पे हरे हरा-हरा घास वहाँ पे दिख रहा है। और वहाँ--

ह जो एक सामने से खिड़की दिख रही है और वहां पे एक रैक भी दिख रहा है कुछ लाल कलर के टेबल भी दिख रहे हैं दो। वहां पर भी एक मोटरसाइकिल खड़ी दिख रही है।